जहाँ सभी प्रकार के अन्य पुस्तकें मिलतीं हैं।

यह सड़क है जहाँ से बहुत सारी वाहनें गुजरती है और घर है।

पहले से सजाई हुई है।